उसके आगे एक कार पार्क की हुई है और लेफ्ट साइड मे एक गाड़ी पे लड़का बैठा हुआ --

पेड़ पौधे लगे हुए --

यह एक होटल जैसे नज़र आ रहा है। एक सीधा रास्ता है और दोनों तरफ अ अ कुछ दरवाजे है।

और उसके आजु बाजु बोहोत सारे अ पेड़ पौधे लगे हुए है।

और एक अ कुछ लड़के है जो कुछ खेल रहे हैं।

यहाँ पे बहुत अ बड़ा गेट है और उसके आगे कुछ पेड़ पेड़ लगे हुए हैं और आगे बहुत बड़ी अ इमारत है और उसकी कुछ खिड़कियाँ नजर आ रही है।